मुझे गोल्डन कलर का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और दुट्टे गेट पे लोहे का गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ बच्चिया और कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जोकि--

दो व्यक्ति बाइक पर बैठें हुए दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति

परमान पब्लिक स्कूल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यह वाइट कलर से पेंट है इसमें--